जो बहुत ही अच्छी है मतलब ब फ्रिज टी.वी वगैरह की दुकान है। और वो बीच में है घरो के बीच में ये दुकान है और यहाँ पर गाड़ी भी है पार्किंग की भी जगह है बहुत अच्छी दुकान है मतलब घर के नीचे --

ये एक लड़का खड़ा है जो बहोत ही अच्छी क्रिकेटर लोगों को देख रहा है | जो बहुत अच्छा भी सीन है इस फोटो में तो बहोत अच्छा सीन दिख रहा है।

ये है हमारा एक रोड है जिसपे ये बना हुआ है। कही कोने में जिसे श-श- जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये लेडीज़ के लिए भी है और जेंट्स के लिए भी है।

और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है इस ओप्पो सेेंटर से सर्विस सेंटर से मिलता है हमें।

ये ग्राउंड है जिसमे क्रिकेट खेल रहे है लोग बल्लेबाज़ी कर रहे है ये कर रहें हैं और बहुत अच्छा ग्राउंड है।